पीलर लगाया गया है रोड की साइड में जो सविया हवाई अड्डा चार किलोमीटर लिखा हुआ है ।

यहां कोई ढलाई का काम हो रहा है।